ये आदमी ने वाइट कलर की मास्क पहन रखी है थोड़ी ही दूर मे एक येलो कलर की बोट है यह बोट मे इंडिया लिखा हुआ है।

यह जिम में बहुत सारे लोग हैं यह लोग वर्कआउट कर रहे हैं यह जिम में बहुत सारे येलो और ब्लैक कलर की इक्विपमेंट रखी हुई।

थोड़ी दूर में रैक पे बहुत सारे बॉटल्स और पाउडर रखे हुए हैं ऊपर वाली शेल्फ में एक फेसवॉश का ट्यूब भी रखा है।

थोड़ी दूर में दुकान के अंदर तीन आदमी बात कर है| एक आदमी ने मास्क पहन रखा है और बहोत सारी बुक्स रखी हुई --

पिक्चर्स में एक आदमी वाइट और ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनकर और एक जींस पहनकर खड़ा है ये आदमी के बगल में एक और लड़का खड़ा है।